एक और मूर्ति है पीछे घर है जो काफी आलीशान लग रहा है यह बहुत खूबसूरत --

यह एक पुराना सा खंडर जहा पर बहुत सारी इटे और पत्थर है पत्थर काफी बड़े-बड़े है पत्थर का रंग जो ब्राउन कलर का है यहाँ पर दिवार भी खड़े है उसका रंग भी ब्राउन है बगल में कुछ घास है।

ये एक फंकशन का स्टेज बना हुआ है जहाँ पर दो सोफ़े रखे हैं जो बोहत ही डिज़ाइनर है| इस सोफ़े का रंग क्रीम कलर और लाल रंग है| सामने का स्टेज फ्लावर से बना हुआ है और उसमें लाइट --

यह एक जीम है जहा पर बहुत सारे जीम करने के सामान रखे है एक बड़ी सी बिशाल टायर है इस टायर का रंग पीला और काला है। निचे फर्श पर रखी हु है।

यह एक जीम है जहाँ पर बहुत सारे जीम करने के सामान रखे है एक बड़ी सी बिशाल टायर है इस टायर का रंग पीला और काला है।

यहाँ पर तालाब है नदी भी केह सकते है इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है दूर-दूर तक बस पानी ही नजर आ रहा है यहाँ पानी में एक नाव है जो काफी बड़ा है।

यहाँ खुला मैदान है और खेत है जिसमें कुछ फसल लगे हैं जो हरे रंग के नजर आ रहे हैं| सामने दूर में पहाड़ भी है और एक पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं बोहत सारे खुला आसमान है जो काफी खूबसूरत लग रहा है।

यहाँ पर बोहुत सारी मिठाईयाँ रखी हुई है जो एक-एक अलमारी पे रखी हुई है और ये प्लेट में रखी हुई है ।

यह नदी है जहाँ पर बोहत सारी बोटस लगी हुई है| बोट्स जो की बोहत ही कलऱफूल है| यह ग्रीन - व्हाइट भी है ऑरेंज भी है पिक - व्हाइट भी है| यह बोहत ही कलरफूल है और यहाँ पर बोहत सारी है।

खुला आसमान है जो नीले रंग का है पानी भी बहोत खूबसूरत लगा रहा है दूर-दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ --